इसका नाम आलम हॉस्पिटल है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

टमाटर आधा कच्चा और आधा पका हुआ है।

सीलिंग पर लाइटें जल रही हैं।

बहुत सी घास दिखाई दे रही है।

दृश्य में एक बड़ा सा नदी नजर आ रहा है।

जमीन पर छोटे छोटे घास दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक पार्क नजर आ रहा है।

बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक बिल्डिंग नजर आ रहा--

आहार फैमिली जनरल वार्ड लिखा हुआ है।

हर पोस्टर में आइस क्रीम लिखा हुआ है।

कलर ऑरेंज वाइट और ग्रीन है।

लाइट का कलर गुलाबी है।

इस दृश्य में एक सब्जी का दुकान दिखाई दे रहा है।

हाथ में चूड़ी पहना हुआ है।

लाइटों का कलर व्हाइट है।

सीलिंग पर लाइटे लगी हुई हैं।